एक कॉलेज है यहां पर एक लड़का फोटो खींच रहा है।

पीछे वाइट रंग की ग्रिल लगी हुई है और जीन्ना भी दिखाई दे रहा है।

पीछे एक साड़ी वाली औरत भी है छोटा सा बच्चा भी है।

पेंटिंग लगी हुई है उसमें मुंह नहीं दिखाई दे रही है।

काफी सारे पेड़ भी खड़े हुए है उनके पत्ते हरे है।

बराबर में और भी सामान रखा हुआ है उसका रंग भूरा है।

यहां काफी सारे आदमी खड़े हुए हैं इनका मुंह नहीं दिख रहा है।